ये तस्वीर को देखे के लग रहा है की ये कोई हॉस्पिटल का सीन लग रहा है। यहाँ --

ये फर्स्ट फ्लोर से ले के एकदम लास्ट के रूम तक खाली-खाली लग रहा है। लगता है अभी-अभी स्टार्ट हुआ है अभी --

ये तस्वीर देख कर लग रहा है की ये कोई मॉल का पिक्चर होगा यहाँ पे --

यह को देख के लग रहा है की ये कोई मोबाइल शॉप लग रहा है।